यहा आपन देख सकते है। बच्चे वंडर ला जैसे ना तो एक्सहिबिशन का स्विमिंग पूल का --

यहा देख सकते है एक बड़ी बंगला दिख रही है इस बंगला को कन्स्ट्रकशन कर रहा है यहाँ अपन को सीमेंट कंकर पत्थर भी दिख रहे है।

लकड़िया से भी बना हुआ है अच्छी पेट भी दाल रहे है।

यहा अपन को नरियल का झाडं बहुत दिख रहे है नारियल का पानी अच्छा रहता है।